सीढ़ी दिख रही है एक बॉय जाते हुए दिख रहा है जिसने येलो कलर की शर्ट और ब्लू कलर के जीन्स पहना है और साइड में बैठने का साधन हैं।

पीछे साइड ऑरेंज कलर का झंडा टंगा है हाउस दिख रहे है खंभा दिख रहा हैं मोबाइल की दुकान दिख रही हैं फल फ्रूट की ठेलिया लगे है यहाँ साइड को पेड़ दिख रहे हैं बाइक खड़ी है।

दिख रहे हैं एक छोटा बच्चा बैठा दिखाई दे रहा है।

विंडो दिख रहे है दो फैन लगे है सामने डोर दिखाई दे रहा है एम ब्लैक कलर की टाइल्स लगी है रस्सी डली है।

स्टेज बना है यहाँ कुछ बच्चे ब्लैक ब्लू ग्रीन येल्लो बैठे है।

इस पिक मे हमे दुकान दिख रही है तीन बाइक रखी है दो मछली के वो दिख रहे है एक मुर्गे का पिंजरा दिख रहा है तराजू दिख रहा है एक बॉय बैठा है कीचड़ जैसी जगह दिख रही है पेड़ दिख रहे है।